और यह मंदिर चंडी देवी का मंदिर है।

इसके आस पास बाग बगीचा और पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो की बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहे।

इस तस्वीर में हमें एक ढाबा नजर आ रहा है जिसका नाम स्टेट साईड ढाबा स्पेशल हैं यहाॅं पर हर तरह का खाना आपको मिलता है जो की--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

इस तस्वीर में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही चौड़ी सड़क है जिसके सामने एक एच_पी का पेट्रोल पंप यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोल पंप बना हुआ दिखाई--

शिव केशरी राम दरबार का गेट है जिसमें बहोत सारे श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से भर के आते हुए यहां पर नजर आ--

इस तस्वीर में हमें एक टीचर दिखाई दे रहा है जो की लेक्चर देता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ स्टूडेंट इस लेक्चर को--

इस तस्वीर में हमें एक ड्राइंग रूम नजर आ रहा है जिसके पा--

इस चित्र में मुझे एक म्यूजियम की तस्वीर नजर आ रही है जहां पर एक म्यूजियम --

इस तस्वी इस तस्वीर में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि एक नीले कलर का घर है यह घर बहोत ही सुंदर और आकर्षक बन--

देखने से पता चलता है ये एक ट्रक के टायर है।